आंगन में एक मंदिर भी है जो बहुत ही अच्छा बजरंगबली का मंदिर--

मंदिर के सामने एक छोटा टेंट भी है।

घर के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं।

एक व्यक्ति के हाथ में एक कागज है।

बहोत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

सफेद कलर का एक टेबुल --

यह कोई सोप का फोटो लग रहा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में--

बहोत सारा पंखा भी है।

एक वाइट और ब्लैक कलर का तकिया भी है।

पुल लकड़ी का बना हुआ है ।

सामने एक टेंट भी है।

यहां बहोत सारा कुर्सियां बहोत सारा टेबल और बहोत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में।

और बहुत सारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में।

यहां बहोत सारा लेडीज खड़ा है।

एक लेडिस के माथे पर एक सूप है सूप में नारियल है।

जो वहां बहोत सारे बहो जो बहोत बड़ा बैंक दिख रहा है देखने में --

एक हीरो होंडा एक ग्लैमर एक साइकल और एक बोर्ड भी लगा हुआ--

कुछ कुछ बच्चे यलो कलर का टी शर्ट पहने हुए--

बहोत बड़ा गेट है बहोत सारा खिड़कियां है।

यहां बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बहोत सारा समान रखा हुआ है।